और वहां पर तीन-चार लोग खड़े हुए हैं।

और उनके ऊपर एक टीन का शेड है।

ये नदी का किनारा दिखाया गया है इसमें नदी में नाव भी चल रही है।

और कुछ लोग नाव की तरफ जाते हुए भी देख सकते हैं और कुछ लोगों को आते हुए भी--

इसमें एक वाइट कलर का मकबरा दिखाया गया है।

और इसमें काफी लोग इसको देखने के लिए आए हुए हैं और यह पूरा ग्रीनरी है।

यह बहुत अच्छी नर्सरी दिखाई गई है।

जिनको गमले में लगाया गया है।

और एक लड़का अपने बेटे के साथ--

और उसमें नीचे हरे रंग का पानी दिखाया गया हैं।

ये स्कूल का एक रूम दिखाया गया है।

और जो स्टेज है वो भी काफी आकर्षक लग रहा है।

ये एक हॉस्पिटल का फोटो दिखाया गया है।

और इसको काफ़ी रंग-बिरंगे पेंटों से पेंट किया गया है।

और जो मैकेनिक है वो कार के नीचे लेटा हुआ है।

और उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।